बहोत ही बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर देखने की दे रही है बहोत ही सुंदर औरत की तस्वीर है।

तस्वीर का दृश्य बहुत ही सुंदर और अच्छा दृश्य नजर आ रहा है दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे री है तस्वीर बहोत ही अच्छी और सुंदर तस्वीर दिखाई दे री है तस्वीर में मुझे बहोत कुछ दिखाई दे रहा है।

गाड़ियां बहोत ही बड़ी-बड़ी गाड़ीया दिखाई दे रही है कैंपर दिखाई दे रही है एक गाड़ी का बोनट खुला हुआ दिखाई दे रहा --

ये टेबल दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एक डस्टबिन पड़ा हुआ है कचरे वाला सा साथ में --

तस्वीर में दृश्य बहुत ही अच्छा और खूबसूरत तस्वीर का दृश्य बहुत अच्छा नजर आ रहा है तस्वीर में देखने के लायक दृश्य बनाया गया है।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

ये कुछ बाईकें खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक रोड दिखाई दे रही है एक साइड में गेट दिखाई दे रही है बिल्डिंग दिखाई दे रही है साइड में बड़ी सी।

बोहोत दूर फोटो दिखाई दे री हैं बोहोत अच्छी फोटो दिखाई दे री हैं फोटो का दृश्य बोहोत ही सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है।

बहोत ही खूबसूरत फोटो दिखाई दे रही है बहोत ही सुंदर और अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है बहोत ही अच्छी --

यहां पे मुझे सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है बहोत अच्छी सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसमें टेबले लगी हुई है कुर्सियां लगी हुई है बहोत अच्छी तरीके से--

सामने मुझे एक फोटो दिखाई दे रही है फोटो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर और अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है जो बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है एक दुकान है दुकान में किताबें बहुत सारी किताबें पड़ी हुई नजर आ रही है।

मेरे को दिखने दिखाई दे रही है दुकानों पे खड़े इंसान दिखाई दे रहे--

ये दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य मुझे मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा।

इधर से बहोत खूबसूरत है एक फोटो मे इधर से दिखाया गया है जो बहोत ही सुंदर और अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा --

जैसे कोई मुसलमान है कोई मस्त चीजे में खड़े हुए--

फोटो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है फोटो में कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं एक मंदिर सा दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कोई मंदिर है कुछ आदमी दिखाई दे रहे --